यहां पे एक लाल एंड व्हाइट कलर का बैनर भी लगा हुआ है और घर के ऊपर भी बहुत सारे घास लगे हुए हैं।

यहां पे बहोत सारे आदमी है जो की वाइट कलर का पैंट पहने गोल्डन कलर का शर्ट पहने खड़े हैं और यहां पे बच्चे लोग भी हैं।

यहां पे बहोत सारे रेलिंग रखे हुए हैं जो की सीढ़ी में लगाने का है यह गोल्डन एंड व्हाइट कलर का है और एक पिंक कलर का है।

यह एक दुकान का बाहर का दृश्य है जहां पर बहुत सारे बोरा लटकाए हुए हैं।

बहोत सारे बाइक भी लगे हुए हैं जो की बाइक ही सुपर स्प्लेंडर का है।

यहां पर लोहा के मदद से सीढ़ी बनाया हुआ है सीढ़ी के नीचे दो जूते हैं जो कि वाइट कलर के हैं।

यहां पे बहोत बड़े बड़े पेड़ भी है और फोन भी है जिसमें बहोत सारे तारे लगे हुए हैं।

यहां पे एक शीशा कोई लगाया हुआ है जिसके ऊपर से एक लड़का फोटो घिंच रहा है।

इसके अंदर बहुत सारे बेग रखे हुए है और ब्लू कलर का कार्टून रखा हुआ है।

यहां पे बहुत सारे तोता बैठे हुए हैं जोकि बास पे बैठ हुआ है।

यहां पे बहोत सारे बाइक का पार्ट्स रखे हुए हैं जो भी प्लास्टिक में है।

यह एक समुद्र का दृश्य है जहां पे एक आदमी पत्थर पे बैठा हुआ है वो व्हाइट कलर का जर्सी पहने बैठा है।

एक स्टेज का दृश्य है जहां पे एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर का कालीन बिछा हुआ है।

यहां पे बहुत सारे लाइटिंग झालर भी लगे हुए हैं और यहां पे पर्दा का भी झालर लगा हुआ है।

यहां पे ब्लू कलर का ब्लेड भी है और यहां पे कान में पहनने का झुमका भी है यहां पे बहुत सारे चूड़ी भी हैं और गोल्डन कलर का हार भी है।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

एक बैनर है जो कि व्हाइट कलर का है उसमें ब्लैक से कुछ लिखा हुआ है और यहां पे बहोत सारे कैमरा और लाइटें है।

यहां पर वो उसका तार पका हुआ है वाइट कलर का।

यहां पे एक लकड़ी का मदद से बहोत अच्छा दृश्य बनाया हुआ है जिसमें बहोत सारे लड़के और जेंट्स और बच्चियां हैं।

यहां पे एक आदमी बैठा हुआ जोकि ब्राउन कलर का कुर्सी पे बैठा हुआ है और यहां पे एक वाइट कलर का बोर्ड भी है।

यह एक रूम का दृश्य है यहां पे व्हाइट एंड ब्लैक कलर का टाइल्स लगा हुआ है।

वहां के दीवाल पर बहुत सारे पुट्टी लगे हुए हैं।